दीवारों पे आप देख सकते हैं फोटो वगैरह लगाए हुए हैं बॉडी बिल्डिंग्स के।

काफी ज्यादा साफ सफाई है बलूंस वगैरह लगा रखे हैं काफी डेकोरेट किया हुआ है इसको।

छपी हुई है इसके बाहर और एक आदमी है जो खड़ा हुआ है अंदर इसके मशीने वगैरा--

है बच्चे हैं साइड में भी ये कोई बड़ा पार्क वगैराह भी दिखाई दे रहा है और समा --

अच्छे लग रहे हैं जो जगह जगह देखने पर अलग अलग फूल पत्तियां गुलाब गेंदे सभी तरह के फूल हैं इसमें आप देख सकते हैं।

और बिस्किट वगैरह के बिस्किट पैकेट है। ऊपर कंडीशनर शैंपू और कई तरह के प्रोडक्ट रखे हुए दिखाईं दे रही है। रैक के अंदर जचाए हुए है ये पैकेट्स --

एक बे रखा है इसके ऊपर एक बोटल्स रखी हैं और--

इधर ये शीशे वगैरह से कुछ दरवाजा वगैरह बनाया हुआ पायदान वगैरह डले हुए हैं।

और ये इसका चेकअप कर रहा है साइड में एक आदमी और खड़ा है अलमारी वगैरा दिखाइ दे--

तो इस फोटो में आप देख सकते हैं ये कोई घूमने फिरने की जगह है शायद यहां पर--

काफी लोग गए हुए हैं बहुत ही ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है।

और चॉकलेटी है नीचे गाड़ियां वगैरा खड़ी हुई दिखाई दे रही है और लाइटिंग वगैरा भी बहुत ज्यादा लगी हुई है।

डेकोरेशन कर रखी जैसे पत्ते वगैरा चिपका रखी हैं और ये चार्ट लिखा लिखकर कुछ लगा रखी येलो कलर पिंक कलर और वाइट कलर और एक पेड़--

चारों की तरफ की बाउंड्री की गई है काफी पेड़ पौधे दिखाई दे रही है ज्यादा साफ सफाई का एरिया दिखाई नहीं दे रहा--

कूलर है और एक दुकान है जिसमें वायर वगैरा टंकी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

ट्रैफिक है जो आते जाते दिखाई दे रही हैं जैसे ई रिक्शा है बाइक्स हैं।

गुड़िया रखी है थोड़ी सिम्पल गुड़िया जिनकी कॉस्टूम कॉस्टूम अच्छी है उसके ऊपर तुम देख सको हो।

और यहां पर हम शादी व्याह और एक्स वाई जेड हर तरह के गिफ्ट वगैरह भी खरीद सकते हैं बाहर आप देख सकते हैं एक बाइक भी खड़ी है एक आदमी है जो अंदर की तरफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।